ए चित्र में क्या नाम है ये किसी पार्क का दिखा रहा है और क्या नाम है ये शाम का टाइम है।

यहां यहां बुके मिल रही हैं और सब नीचे लकड़ी की स्ट्रिप लगी हुई है।

नीचे मिट्टी पड़ी है और वो शोरूम का कलर उनका नाम है ग्रे कलर का है और लाइट कलर की इसके बॉर्डर है उसमें लाइट जल रही है।

खड़ा हुआ है व्हाइट कलर कि टी शर्ट पहन के और बाइके खड़ी हुई है।

सामने इसमें पाइप नजर आ रही है एक बाइक भी नजर आ रही है।

इस बिल और इधर से फोटो में सामने की रोड भी नजर आ रही है जहां पे आदमी चल रहे--

अ स्कूल का कलर व्हाइट और रेड में और नीचे पर्पल है और लड़कों को अ वहां बिठाया गया है कॉरिडोर में।